ए दो तीन स्प्रे बॉटल दिखाई दे रही हैं। एक ब्लू कलर का टॉवल दिखाई दे रहा है।

एक तो सफ़ेद कलर का पिलर दिख रहा है। अ पिलर पे एक सफ़ेद कलर का स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है। एक अ--